खटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे बहुत सारे आदमी --

तरह-तरह के सामान बेचने के लिए--

बाइक भी लगे हुए हैं।

यह एक तालाब है यह तालाब में बहुत ही गहराई तक --

ट्वेल्व तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है।

यहाँ पे बहुत सारे लड़के फुटबॉल खेलते आते है ।

पहाड़ों में बहुत सारे आदमी --